जिम कि बहुत सारी एक्सेसरीज रखी हुई है पीछे मे पंखा रखा हुआ है साइड में शीशा लगा हुआ है नीचे कार्पेट लगा हुआ है।

ये शायद बैंक का सीन है जहाँ पे बहुत सारे लेडिस बूढ़े बच्चे लोग आए हैं बैंक में| शायद यह शीशा लगा हुआ है वहाँ से सब पेमेंट ले रहे हैं बहुत सारे कागज लगा हुआ है शीशा के ऊपर।

बालकनी दिख रहा है हमें यहाँ पे हमें विंडो दिख रहा है और जो पीछे का जो है पूरा ब्लैक कलर का है।